और काफी मजदूर यहां काम--

कमरा दिख रहा है जहां पर दो मंजे लगे हुए हैं।

एक स्लैप पर गैस रखी हुई है और सिलेंडर भी दिख रहा है और साथ मे ही एक--

आ रहे हैं और एक बड़ी सी मूर्ति जहां--

जिसके पैर नजर आ रहे--

सोफे कुर्सियां मेज पड़े हुए दिख रहे हैं।

यह सब्जी मंडी लग रही है यहां कुछ लोग--

और एक बाइक पर औरत बैठी--